यहां पर कुछ व्यक्ति उधर जा रहे हैं तो कुछ लड़कियां भी इधर आ रही है।

बगल में एक बहुत बड़ा घर है जिसमें से एक खिड़की है जिस पे लोहे का ग्रिल लगाया गया है।

यहां पर आगे में कैरेट में बहुत सारी सब्जियां और आलू कुछ रखे गए हैं।

यह एक किसी बहुत ही बड़े दुकान का फोटो है।

यह एक किसी बहुत बड़े घर का फोटो है।

दोनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

उधर एक टेबल पर एक व्यक्ति पढ़ रहा है उधर भी कुछ लड़कियां पढ़ रहे हैं।

यह एक किसी कार्यक्रम होने के पहले का ये लिया गया चित्र है।

कुछ कपड़े के भी रेडी लगाई है एक व्यक्ति है जो इसे बेच रहा है और--

फोन चलते हुवे नजर आ रहे हैं।

यह एक किसी बहुत ही बड़े कोई होटल का मैनेजिंग एरिया का फोटो है।

यहां पर बहुत सारे अलग अलग टेबलों पर ग्लासेस और कप रखे गए हैं।

एक प्लास्टिक में मटर छिमनी भी है।

यह एक किसी लाइब्रेरी का चित्र है।